यहाँ पे झरना है जैसे लग रहा है यहाँ पे बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है और ये जगह अच्छा दिख रहा है।